इस चित्र में मुझे लड़के --

इस चित्र में मुझे एक खेत नजर आ रहा है।

एक ज्वेलरी की --

एक ज्वेलरी की शॉप दिखाई दे रही है।

भोपाल का मशहूर वी_आई_पी रोड दिखाई दे रहा है।

चित्र में मुझे बहुत सारी मछलिये दिखाई दे रही हैं।

पर्पल और फिरोजी रंग से होती है।

भी दिखाई दे रहे --

मोबाइल की दुकान दिखाई दे --

में मुझे एक शोरूम --

हरमान की दुकान दिखाई दे रही--

एक बहोत बड़ा वाइट बोर्ड लगा हुआ है।

चित्र में मुझे एक --

और ये ढाबा पीला और नीले रंग--

बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में मुझे --

चित्र में मुझे एक --